इस पिक्चर में एक फंक्शन दिख रहा है।

इस पिक्चर में एक बहुत बड़ा उम्म टेबल टेनिस बास्केटबॉल का ग्राउंड है।

मैट है बहोत ही साफ सुथरा है।

इस पिक्चर में बद्दी यूनिवर्सिटी की बस --

रेड और क्रीम कलर की बिल्डिंग दिख रही हैं यहां पर लाइट्स हैं।

एक स्पा ब्यूटी सैलून भी है उसके ऊपर हेयर ब्यूटी स्पा का।

एक आदमी कैरी बैग लेकर खड़ा हुआ है।

उसके दोनों साईड बहोत सुंदर फूलों के गमले रखें हैं।

एक बहोत बड़े नदी तलाब जैसा है।